ये एक स्कूल हैं यहां पर सभी लोग जा रहे हैं और एक लड़का है जो चौंकी पे बैठा हुआ हैं।

दोनों लड़के आपस में कुछ कर रहे हैं।

रोटावेटर रखा हुआ है गाड़ी का पीछे तार का बंडल रखा हुआ है काफी और बहुत सामान रखा हुआ है गैरेज में।

ये हॉस्पिटल टाइप का है जिसमें कांटेक्ट लिखा हुआ है दो गो सैंबल दिया हुआ है फोन का।

और पीछे जो सारा सब एट पी_एम सिक्स रखा हुआ है डाबर का सामान रखा हुआ है।

बेसिन बहुत सारे हैं जो अभी बहुत कलर अच्छे कलर के हैं लेकिन दोकान में बहुत सारे लाइट भी लगे हुए हैं।

और व्हाइट कलर का पट्टी बना दिया गया है और कम्प्यूटर रखा हुआ किबोर्ड रखा हुआ है माउस है।